इस पिक्चर में एक चर्च दिखाई दे रहा है जो कि बहुत बड़ा है और बाहर उसके बहुत से व्यक्ति खड़े हुए हैं।

इस पिक्चर मे एक गार्डन दिख रहा है जिसमे बहोत ही अच्छा डेकोरैशन है दो आदमी बैठे हुए है।

इस पिक्चर में कुछ समारोह चल रहा है जिसका नाम धम्म सम्मेलन है इसमें भगवान बुद्ध की----

बहोत सारे कुरकुरे की पैकेट तथा साइड मे टंगे हुए है।

एक पुल भी दिख रहा है जिसमे रेलिंग लगी हुई है और लाईट भी लगीं हुई हैं और पीछे बहोत घने पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक बुजुर्ग कहीं जा रहे है जो हाथ में मोबाइल रखे है और एक बाजु में लड़का भी खड़ा है।

इस पिक्चर में बहुत सारे दूकान दिख रही है और सामने बंधन बैंक है और फल फ्रूट की दूकान है।

ये एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ही खिड़कियां लगी हुई है और खिड़कियों में से पीछे भी स्कूल का हिस्सा दिख रहा है एक फील्ड दिख रहे है और स्टूडेंट दिख रहे है।